बड़ा सा लाइट लगा हुआ है यहां पे पेड़ सब लग हुआ है इधर एक बैरियर लगा हुआ है।

यह एक ए_सी ता फिल्टर है यहां पे ए_सी दा मीटर लगा हुआ है।

बहुत सारे टाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ हैं इधर जनरेटर रखा हुआ हैं।

यहा पे लाइट भर रहा है और यहाँ पे साइड मैं स्टेर्स हैं उधर टायर रखा हुआ हैं।

यहाँ पे टायर ढसा हुआ है यहाँ पे बहोत सारे ट्रक लगे हुए है उधर एक प्लाई लगा हुआ है साईड में--

यह एक इन नया नया ए_सी है है एक का प्रेशर पाइप कंप्रेसर पाइप है नीचे में एक आदमी खड़ा है उधर एक टेबल है।

एंड इंडस्ट्री है यहाँ पे साईड में निचे में पाईप रखा हुआ है साईड में बास है ।

यहां पे बहुत सारे प्लाई रखे हुए हैं यह प्लाई तो बेसिन बना हुआ है ऊपर में।

वार्ड बना हुआ हैं साइड में लाइट हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना हुआ ह--

यहाँ पे बहुत सारे पिलर बने हुए हैं ऊधर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं ऊपर में --

बास रचे हुए है पाइप रचे हुए है यहाँ पे बहोत सारे छोटे छोटे पेड़ पौदे लगे हुए है।

यहाँ पे नुतर रखा हुआ है नुचल में टेबल रखा हुआ है।

ऊपर बड़े बड़े हाइड्रोलिक पंप लगे हुए हैं यहां पे।

बहोत लाइट वाइट यहां पे बर रहा है डेकोरेशन किया गया है यहां पे--

रखा हुआ है यहां पे ये बरा सा नीम का पेर है।

पीपल था उसके बगल में छोटे छोटे पेड़ है यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है।

यहाँ एक कुत्ते का ट्रीटमेंट हो रहा है जिसके ऊपर एक लपेटा दिया है वहां पे ऊपर है।

पहना हुआ है और मास्क पहना हुआ है उसी के बगल मे--

यहां पे एक केले का पेड़ है उसके बगल में यहां पे केला रखा हुआ है।

यह एक का लारेज फोटो हैं लारेज के अंदर ये स्टीयरिंग हैं उसके बगल में इंटेरियो हैं उ ब--

यहाँ पे एक लैस रखा हुआ है उधर अंकल चिप्स रखा हुआ है यहाँ पे छोटा सा बकेट रखा हुआ है।

यह एक दुकान का फोटो जहा पे निचे में कुरकुरे टंगा हुआ है लेज वह पे रखा हुआ है।

यहां पे एक कंस्ट्रक्शन हो हो रहा है जहां पे वर्कर सब पेंट कर रहे हैं वर्कर सब ने --

येलो कलर का टोपी पहन रखा है ऑरेंज कलर का शार्ट पहन रखा--

यहाँ पे चेयर रखा हुआ है ऊपर एक सीडी है साईड में एक लिफ्ट लगा हुआ है वहींपर एक--

बड़ा सा पाइप लगा हुआ है उसके बगल में एक पेप्सी का रखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक का --

फोर व्हीलर लगा हुआ है यहां पे आदमी सब बैठे हुए हैं।

इस ची इस चित्र में हम लोगों को एक झरना नजर आ रहा है झरना के बगल में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ है।

ये जस्ट इस साइड बॉस का पेड़ भी नजर आ रहा हैं वही पर मंदिर भी नजर आ रहा हैं।

यहाँ पे उपर में पंडाल लगा हुआ हैं उसके साइड में बहोत सारे डेकोरेशन के फूल लगे हुए हैं उसके उधर फेन हैं।

यह एक अंगूर का फोटो है अंगूर के तरफ एक पेपर यहां पर रखा हुआ है पेपर --

यह एक स्टूडियो है जिम है जिसमें साइड में ऊपर में कपड़ा पसारा हुआ है यहां पे गेट वेट बना हुआ है उसके इस तरफ --

यह एक ग्राउंड है जिसके आसपास बहोत सारे फूल धरे हुए है वही पे व्हाईट लड़का लाइनिंग हुआ हुआ है ।

इस पिक्चर में यहां पे नाले का पानी बहता दिख रहा है यहां पे बहुत सारे जंगली पेड़ सब

रैपर फेंका हुआ है उसके साइड में लाइट लगा हुआ है।